क्रिसमस का समय है जिसके लिए यहाँ पर क्रिसमस --

यह एक कंप्यूटर सेण्टर है जिसका नाम है वैशाली कंप्यूटर सेण्टर ।

यह एक मसाज पार्लर है जहाँ पर मसाज होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ है और दूसरा व्य --

यहाँ पर किसी फउंडेशन की तरफ से --

यहाँ एक बैंक है बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक है जहां पर एक व्यक्ति--

लाइटे रखी हुई हैं और व्यक्ति यहाँ पे आएंगे और लाइट लेकर के जायेंगे।

और वह एक व्यक्ति उसके सामने ही खड़ा है और पैंट -शर्ट पेहेन कर के खड़ा है और सर पे गमछा बाँधा है।

यहाँ एक बहोत ही बड़े कछुए का तस्वीर है कछुवा जमींन पर हैऔर बहोत छोटे-छोटे --

और यहाँ पर लिखा हुआ है की यहाँ पर साड़ीयां भी मिलती है और अंदर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है ।

पत्थर को बस्ते में भर रहे हैं और दो-चार लोग एक जगह पर खड़े हैं।

लम्बा है और एक सूखे पेड़ की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

चेयर लाइन से लगा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति तो नजर नही आ रहा है ।

यहाँ पर विवाह हो रहा है विवाह मंडप पर लड़का-लड़की बैठे हुए है और पंडीजी मन्त्र पढ़ रहे है।

बूढ़ा व्यक्ति बाल्टी में पानी लेकर के कपड़े को भिगो करके कार को साफ कर रहा है।

यहाँ पर लोग तरह-तरह से अपनी गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे है।